यहां पे बहुत सारे लोग बस में जा रहे हैं और कुछ लोग अपना अपना बैग लेकर आना जाना कर रहे हैं।

ह दृश्य एक छत का बालकनी के पास का है ।

यह दृश्य में एक स्टेज बना हुआ है।

यह दृश्य एक पर्दे का दुकान का है।

और इसके पीछे गुलाब का गुलदस्ता भी रखा हुआ है।

और अंदर टेबल लगा हुआ है यहां कुछ लोग बैठे हुए हैं।

एक व्यक्ति अप ब्लू रंग का शर्ट पहनकर खड़ा है।

दीवाल पर टी_वी लगा हुआ है जो जिसकी एक टी_वी चल रही है और एक टी_वी बंद है।

दृश्य एक ग्राउंड का हैजहा पे बीच में टेंट लगा हुआ है जो कि सफेद और ब्लू रंग का है।

यहां पानी का टंकी है और बहुत सारे पेड़ है।

पेपर पर कुछ लिख रहा है दीवाल पर एक ऐ_सी लगी हुई है एक पंख लगा हुआ है।

जो की हरे रंग का है और इसका शटर बैंगनी रंग का है।

इसके ऊपर एक गुलाबी रंग का पोस्टर लगा हुआ है और कुछ हैंगर टंगा हुआ है।

यह दृश्य एक मस्जिद का है जिसका रंग सफेद है।

अ इसके बीच पर ऑरेंज रंग किया हुआ है।

यहां एक बच्चा सर पे पगड़ी लगाकर खड़ा है और दुल्हन बैठी हुई है।

और एक और पोस्टर लगा हुआ है यहां कैडबरी का चॉकलेट रखा हुआ है।

यह दृश्य एक घर की है जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है।